सामने घास भी दिखाई दे रही है पीछे सामने एक वाइट कलर की बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सामने एक वैक्यूम क्लीनर दिख रहा है जिसका ढक्कन रेड और ब्लैक कलर का दिख रहा है।

बलूंस भी बहुत लगाए गए हैं। बलूंस दो कलर कॉन्बिनेशन में अवेलेबल है।

इस इमेज में एक प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें एक बच्चा हॉकी खेल रहा है।

प्लेग्राउंड के चारों तरफ लोहे के बहुत बहुत बड़ी दीवारें खड़ी है उनके पास में कुछ गाड़ियां भी खड़ी है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं जो कलरफुल कपड़े पहने हुई हैं एक लड़की स्काई ब्लू कलर की जैकेट पहने हुई है।

जोकि चॉकलेटी कलर का कछुआ है कछुए को देखकर लग रहा है कि कछुए की उम्र बहुत ज्यादा है।

कुछ अटका हुआ है कछुआ की परछाई भी नीचे नजर आ रही है।

इस इमेज में एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसका पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है।

चारों तरफ बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है पेड़ पर बहुत सारे रेड कलर के फूल लगे हुए है।

सामने उपर ग्रीन लाइट लगाई गई है जोकि बहुत सी कलरफुल लाइट्स लग रही है।

इस इमेज में एक गोडाउन को दिखाया गया है जिसमें बहुत सारा सामान पैकेटो में भरा हुआ है।

ट्रक का कलर चॉकलेटी कलर का है। सामने एक क्रेन भी दिखाई दे रही है जो कि इन्हें अनलोड कर रही है।

जो वाइट कलर की दिख रही हैं नीचे फर्श पर मार्बल लगी हुई है जो चॉकलेटी कलर की है।

जो कि ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई है लेडिस का फेस नहीं दिख रहा है फेस को हाईड किया गया है।

जिसमें चार कुर्सियां पड़ी हुई है जो की सोखते वाली लाइट ऑरेंज कलर की कुर्सियां है बहुत सारे मिरर्स भी लगे हुए हैं।

ए_टी_एम का गेट शीशे का लगाया गया है ए_टी_एम में कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा।

सामने की ओर चार पांच बाइक खड़ी हुई है जो की ब्लैक कलर की दिख रही है।

उनमें से एक लेडीज हैं लेडीज येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है।

चर्च के बाहर कुछ लोग मोमबत्ती जला रहे हैं नाइट का दृश्य लग रहा है।

मंदिर में एक गुम्बद है गुम्बद का कलर रेड कलर से किया गया है।

बाउंड्री के आगे एक सोलर पैनल लगा हुआ है जिसपर एक बैटरी रखी है।

जो प्लास्टिक का व्हाइट कलर का पाइप है ऊपर भी बहुत सारे बड़े बड़े पाइपस रखे हुए हैं।

कवर्स में गेंदे के फूल रखे हुए हैं जो की प्राकृतिक फूल हैं।

सामने एक रोड गया हुआ है जीस पर एक बंदा साइकिल चलाते हुए जा रहा है।

तालाब के किनारे बहुत सारे ग्रीन पेड़ खड़े हुए हैं जिनका प्रतिबिंब पानी में बन रहा है।

तट को पक्का बनाया गया है उस पर ग्रीन कलर की मार्बल्स लगाई गई हैं।

इसकी बाउंड्री ग्रीन कलर से की गई है पीछे ग्राउंड में ग्रीन ग्रास लगाई गई है।

ग्राउंड में कुछ चेयर्स और टेबल्स भी पड़ी हुई हैं जो की लोहे की चेयर हैं।